सेंट्रल बैंक के ऊपर बोर्ड में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा दिख रहा है।

आदमी ने सफेद कलर के कपड़े पेहने हुए हैं।

इस चित्र में हम एक घर देख रहे हैं घर के अंदर दरवाजे दिख रहे हैं दरवाजे के मेन दरवाजे में एक सफेद बैलून दिख रहा है।

फर्श में चारों साइड हरी कलर की घास दिख रही कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

कांच में भी कुछ है नौलखा टाइप का लिखा हुआ है उसी के बगल में नौलखा ज्वेलर्स दुकान और दिख रही है वहाँ अंधेरा दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक भवन को देख रहे हैं भवन के बाहर दीवाल दिख रही है भवन के किनारे एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक खेत को देख रहे हैं खेत में क्यारियां बनी हुई है क्यारीयों के बीच में छोटे छोटे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

दोनों तरफ पेड़ दिख रहे है एक आदमी के द्वारा साइकिल में बैठकर साइकिल चलाया जा रहा है।